लिखा हुआ है और नीचे बहुत सारे शॉप्स बनी है।

पेड़ लगे हुए हैं सामने बहोत पेड़ है यहा एक पूल भी बना हुआ है और पूल पर तो--

कपल खड़े हुए हैं और वो अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं और भी कई सारे व्यक्ति वहां खड़े हुए हैं।

सामने बहुत सारे जामुन पड़े हुए हैं और --

और साइड में इनके बहोत बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए है।

एक व्यक्ति के हैंड में बहुत बड़ा फोन है।

इसके ऊपर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

यह लड़कियां पढ़ रही है एक लड़की के हाथ में टली हुई है।

वहां एक छोटा सा स्टेज लगा हुआ है स्टेज के ऊपर एक सोफा पड़ा हुआ है।

और यहां बहुत सुंदर डेकोरेशन भी की हुई है।

सामने बहोत सारे गड्ढे भी बड़े हुए है और यहां बहोत बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हुए है।

सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके ऊपर टेराकोटा शिल्प लिखा हुआ है।

इस मशीन के ऊपर वाई_एम_टी लिखा हुआ है और यहां कई सारा सामान भी नीचे पड़ा हुआ है।